यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक बंगला है। जिसका वाइट कलर का पेंट किया हुआ है। कुछ शीशा लगा हुआ है। ब्लू कलर का निचे रोड है। सड़क है।

कुछ पोस्टर लगे हुए हैं। जो की ब्लू कलर में है। नीचे डस्टबिन रखा हुआ है। ग्रीन कलर का कुछ पेड़ पौधे हैं। वायर है। गेट है।

निचे मिट्टी है। रोड है। बहुत बड़े-बड़े पेड़-पौधे है। एक ईटा है। सीमेंट और खपड़ा का घर है।

यहाँ पर कार का शॉप है। इसमें दो कार है। दोनों ब्लैक ही है। ऊपर में को नीला रंग का पोस्टर लगाया--